शिने बर्गर कोर्नर खुला हुआ है। और उसमे बोटल रखी हुई है और कई सारे लोग खड़े हुए हैं।

कई सारी सामग्री रखी दुकान में कोई कुछ ऑयल दिख रहे है और बादाम का जूस है कुछ मसाले ऐसे कुछ दिख रहे है प्रोडक्ट कई प्रकार के सारे के सारे प्रोडक्ट दिख रहे है।

जिला एवं शस्त्र न्यायालय का गेट खुला हुआ है वहाँ पे जाते हुए कई सारे लोग हैं और एक लेडीज़ दिख रही है जो --

और सीढ़ियाँ दिख रहे हैं साइकिल के टायर दिख रहे हैं ट्रांस्फारम दिख रहा है। खंभे लगे हुए हैं टावर ऊपर लगा हुवा है स्क्रीन --